एक ए_सी भी लगी है एक पंखा लगा है।

जिसपे दो नाव तैर रही है।

और एक शीशे वाला गेट लगा है। ऊपर छत में कुछ लाइट जल रही है।

यहां कुछ कोरोसिया पड़ी हैं जिनपे कुछ लेडिस और कुछ जेंट्स बैठे हैं।

और कुछ पेड़ पौधे लगे हैं।

यहां दो नीले कलर की रिक्शा खड़ी हुई है।

और कुछ पंखे भी लगे हुए हैं।

एक मिठाई की दुकान है।

और कुछ लोग नीचे खड़े हैं।

और कुछ टेंट भी लगे हुए हैं।

यहां पर एक स्टेज लगी हुई है जिसके ऊपर एक सोफा रखा है।

और यहां डी_जे रखा है उसके आगे लाइट वाला फ्लोर पड़ा है।